इस फोटो में एक दुकान है जहां पर बहुत सारे केक रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है जिसका दीवाल का रंग--

यहां पर ऊपर में करकट लगा हुआ ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक का।

जहां सामने का दीवाल का रंग स्काई ब्लू है सीलिंग का रंग सफेद है।

ऊपर एक पंखा है सफेद रंग का जो चल रहा है।

बहुत सारे अलग अलग तरह के कलर रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने काफी बड़ा सा बिल्डिंग है जो की लाल रंग का है।

इसमे बहोत सारे बहुत सारी खिडकियाँ हैं।

यहां पर सामने एक ईसा मसीह बने हुए हैं।

इस दृश्य में एक सामने छोटा सा कमरा है जिसका दीवाल का रंग हरा है।

एल्यूमिनियम का गेट है उसमें उपर से काला रंग शीशा लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक दुकान है जहां पर बहुत सारे रैक लगे हुए हैं रैक का रंग सफेद है।

अंदर एक टेबल है जिसके बाहर में पोस्टर लगा है बड़ा सा जो स्टूडियो का है।

एक काउंटर के बाहर शर्माइका लगा है जोकि हल्का स्काई ब्लू जैसा है।

इस फोटो में सामने बहुत सारे लड़की लोग हैं और स्टेज जैसा बना है यहां पे सीढ़ी जैसा बना है।

इस फोटो में एक छोटा सा कमरा है यहां का दीवाल सफेद रंग का है।

एक बड़ा सा एकदम चट्टान है जोकि हल्का काला और ग्रे रंग जैसा है।

उन्हीं में गुलाब का फूल बीच में डाला हुआ है जो लाल रंग का है बहुत सारे पत्ते भी है इसमें हरे रंग के --

इस फोटो में एक बड़ा सा फील्ड है जहां नीचे बहुत सारे बड़े बड़े हरे रंग के घास जमे हुए हैं।

इस फोटो में एक बहोत ही बड़ा सा फील्ड है जिसमें बहोत सारे बड़े बड़े हरे रंग के घास निकले हुए हैं।

सामने बहुत सारे आदमी लोग हैं बहुत सारे बच्चे लोग हैं और बहुत सारी लड़की लोग हैं।

इस फोटो में सामने एक बड़ा सा हॉस्पिटल है।

नीचे बहुत मार्बल बिछा है जो भी लाल रंग का है।

रैक के शीशे वाला रैक है उसके ऊपर में एक बड़ा सा कार रखा हुआ जो अपने से क्राफ्ट कर सकते हैं।